अगल-बगल बूके रहे गए है एक दरवाजे के सामने कुछ लोग खड़े है अलमारी है कथे रंग का कुर्सी लाल है टेबल है जिसके ऊपर रुमाल रखी हुई --

हमने एकम कांच लगा हुआ है जो काफी बड़ी कांच सीसा हैं शीशे के अंदर के सर पीछे साइड पर खूरसि लगी दिख रही है दीवाल दिख रहे हैं जो हरे रंग के पेंट किए गए हैं।

और बहुत सारे फुट बॉल रखे हुए हैं एक छोटा सा डी.जे. जो काले रंग का है डंबल रखी हुई है।

और पीला दीवाल है बुके हैं जो नीला सफ़ेद है ।

गेट बना हुआ कांच लगी हुई है बोर्ड लगा हुआ है और एक ए स्कूटी है काली और सफेद साइकेल खड़ी हुइ है काले रंग का बोर्ड लगा हुआ है सफेद दीवाल है।

लाइट जल रहे हैं। सफेद ऊपर चले जो सफेद और काटे रंगका पंख लगी हुए हे।

सामने एक बहोत बड़ा गौतम बुद्ध का चित्र बना हुआ हैं।

और जो सफेद है पीछे साइड पे पोस्टर लगी है गोल्डन रंग का है और नीचे साइड पे छोटे-छोटे चित्र बने जो सफेद गोल्डन रंग के पीतल के बनाए गए हैं। नीचे फर्श किया गया--

गाड़ी खड़ी है। सफेद अ और एक ऑटो जा रही है पीले रंग की ऑटो है। सफेद नीला आसमान ने पेड़ पौधे है हरी पत्ती है।

और सामने एक साइक पे लाइट जलेन जो नीले रंग का दीवाल है।